लोग भी दिखाय दे रहे है यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाय दे रहा है यहाँ पर धुप भी आती हुयी नजर आ रही है और खाफी सारे पेड़ पोधे दिखाय दे रहे है।

बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड में काफी सारे पेड़-पोधे दिखाई दे रहे है यहा पे कुछ दिखाई दे रही है यहा पर नीला-नीला आसमान दिखाई दे रहा हैं।